चित्र में हमें एक खुला मैदान नजर आ रहा है।

इस शॉप की सफेद छत है और इसकी छत पर व्हाइट कलर के गुब्बारे लगे हैं और ऑरेंज कलर --

इसके अंदर गुलाबी और पीले रंग के बहुत सारे शमीयाने लगे हैं।

इस हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और सभी बच्चे नाच रहे हैं।

चित्र में हमे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जो कि रेड कलर का है और नीचे पानी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हैं और सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर ए_टी_एम लिखा हुआ है और उसके नीचे टीन डली हुई है।

यह एक रोड के बीच में खड़ा है और उस पर दुकाने नजर आ रही है।

इसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और सामने बहोत सारे घर बिल्डिंग हाउस नजर आ रहे हैं।

इसमें लहराता हुआ पानी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे काउंटर लगे हुए हैं जिनके अंदर कपड़े टंगे हुए--

साइड में दूसरी दुकान का बोर्ड नजर आ रहा है जो कि आधा दिखाई दे रहा है।

पीले और ऑरेंज कलर का झंडा हाथ में लिया हुआ खड़ा है।

पर नीचे पत्थर कंकर और छोटे बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं।